मुझे इधर काफी सारे बालू नजर आ रही है।

सामने काफी सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इधर मुझे एक पोस्टर भी दिखाई दे रही है।

इधर मुझे एक तालाब दिखाई दे रही है।

मुझे इधर एक लोहे की बर्तन भी नजर आ रही है।

मुझे स्टेज के पीछे एक बैनर लिखाई दे रही है।

मुझे इधर एक इंसान बेकते हुए भी नजर आ रही है।

जे इधर एक बच्चा टोपी पकते हुए भी नजर आ रही है।

अंदर काफी सारे सामान और बॉटल्स भी नजर आ रही है।

चर्च के आसपास काफी सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रही है।

घर के उस पार मुझे एक लंबा सा वृक्ष भी दिखाई दे रही है।

मंदिर के सामने मुझे एक मूर्ति दिखाई दे रही है।

इधर मुझे एक बड़ा सा घर दिखाई दे रही है।

मुझे बाहर काफी सारे इंसान भी दिखाई दे रही हैं।

घर के किनारे कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है।

मुझे इधर केले के घास भी नजर आ रही है।

घर के मुझे फेंसिंग भी नजर आ रही है।

मुझे इधर एक चेयर भी दिखाई दे रही है।

मुझे इधर बहुत सारि महिलाएं दिखाई दे रही है।

पेंटिंग कि हुई भी नजर आ रही है।

मुझे इधर एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

मुझे इधर दो इंसान भी नजर आ रही है।